यहाँ पर ढेर सारे घास उगल रहा है ।

गोल्डन कलर का है मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है। इस मूर्ति का हाइट छः फ़ीट है।

यहाँ पर दर्शकों के लिए एक सुंदर-सा छाव भी है।

ये डिश बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छे से इस डिश को साफ़ किया जाता है ।

यहाँ पर एक पूजा चल रहा है पूरा ग्राउंड को कारपेट से कवर किया गया है।

देखभाल करने के लिए ढ़ेर सारे लोग काम करता हैं। टाइमली खाना भी दिया जाता है पानी दिया जाता है और चिकित्सा भी किया जाता है।

इ हमारे इलाका का मछली का मार्केट है इ मछली का मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ ढेर सारा ताज़ा ताज़ा ढेर सारा मछलियां है इलाका का लोग इस मछलियां दुकान से खरीदता है इहा पर एक --

यहाँ पर आना जाना लोग निषेध है इस जंगल में हरिण टाइगर बायसन्स देखने को मिलेगा।

इ हमारा इलाका का एक कॉलेज है कॉलेज बहुत बड़ा है इस कॉलेज का कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है बहुत जल्द यहाँ का काम ख़त्म हो जायेगा इस कॉलेज का सामने --

ये हमरा इलाका का मंदिर है ये मंदिर बहुत बड़ा है और बहुत ही पुराना है इस मंदिर के चोरो तरफ ढेर सारा बड़े-बड़े पेड़ है दूर-दूर से लोग यहां घूमने के लिए पूजा करने के लिए --

जालों से घिरा हुआ है ये ओवरब्रिज बहुत ही बड़ा है और बहुत ही कलर फुल है इलाका का लोग रोड क्रॉस करने के लिए इस ओवरब्रिज का इस्तेमाल करता है ।

यहां पर ढेर सारे खिलौने के दुकान है खाने का स्टाल भी है इलाका का लोग दूर-दूर से यहां पर मेले के घूमने के लिए आता है।

ए हमारे इलाका का एक सड़क है। ए सड़क समुद्र के किनारे पे है। यहाँ से समुन्द्र का व्यू बहुत ही सुंदर है। इस सड़क --

बगल में बैठने के लिए ढेर सारे जगह भी है यहाँ पर हर वक़्त लोगो की भीड़ लगी रहता है ।

ये हमारे इलाक़े का एक जीम सेंटर है ये जीम सेंटर बहुत ही बड़ा है इस जीम सेंटर के अंदर ढेर सारे मशीन्स है ये जीम सेंटर बहुत ही पुराना है ।

ये हमारे इलाका का एक गार्डन है ये गार्डन बहुत ही बड़ा है इस गार्डन के चारों तरफ ढेर सारे सुन्दर-सुन्दर --